और मुझे पेड़ पौधे भीं दिखा--

टेंट में मुझे कुछ काउंटर भी दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

मुझे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं डस्टबिन भी दिख रही--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

मुझे कुछ डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक काउंटर भी दिखाई दे रहा है।

और चेयर भी दिखाई दे रही है।

गोडाउन में मुझे कुछ मशीन भी दिखाई दे रही हैं।

और कुछ लोग भी दिख रहे है।

मुझे कुछ दुकान दिखाई दे रही है।

नए कपड़े ऑरेंज शर्ट और ब्लैक जैकेट पहन रखी है।

मुझे एक गौशाला दिखाई दे रही है।

मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

मुझे एक स्कूल दिखाई दे रही है।